चित्र में हमें कोई हॉस्पिटल के अन्दर का फोटो लग रहा है।

कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

दो लोग हमें रस्ते में दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में हमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में हमें खिड़कियां नजर आ रहे हैं।

चित्र में हमें एक बरा घर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ बैनर या फिर साइनबोर्ड जैसे भी नज़र आ रहे हैं।

द्वार में कुछ मूर्तियां लगे हुए है।

चित्र में हमें घर जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं।

चित्र में हमें कुछ टेबल और चेयर दिखाई दे रहा है।

ये चित्र में हमें एक टेंपो दिखाई दे रहा है।

हमें कुछ लाइट दिख रहा हैजो दुकान जैसे के अंदर में जला हुआ है।

बिल्डिंग में हमें कुछ खिड़कियां और दरवाजे नजर आ रहे हैं।

हमें कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ साइन बोर्ड डिखाई डे रहा है जो पीले रंग का है।

हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिए गए छवि में हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

हमें पिलर्स दिखाई दे रहा है जो रूफ़ को सपोर्ट कर रहा है।

पिलर दिखाई दे रहे हैं जो रूफ को सपोर्ट कर रहा है।

हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है।

चित्र में हमें दो टेबल दिखाई दे रहे है।

हमें कुछ बैलून दिखाई दे रहे हैं जो नील और सफेद रंग के है।

एक नीले रंग का छोटा सा टैंकी जैसा दिख रहा है।

हमें कुछ मशीन दिखाई दे रहे हैं।

हमे घर दिख रहा है जिसमे एक बैनर लगा हुआ है।